यहाँ पे मुझे मोबाईल की दुकान लिखी दिखाई दे रही है इसमें बोहोत सारी दुकान मुझे दिखाई दे रही है और बोहोत सारी बाइकें रखी दिखाई दे रही है यहाँ पे बोहोत लाइटें लगी दिखाई दे रही है --